टीन की छत गिरी हुई है।

एक आदमी पैदल जा रहा है।

बहुत सारे पेड़ भी खड़े हुए हैं।

बहुत सारे रजिस्टर भी रखे हुए यहां पर।

कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है।

इस पिक्चर में एक होटल है।

एक पाइप भी पड़ा हुआ है यहां पर।

फ्रिज के ऊपर पानी को बोतल रखी हुई है।

सारे आदमी खड़े हुए हैं यहां पर।

झालर भी लगी हुई है रंग बिरंगी।